अमूल का बोर्ड लगा हुआ है बलून लगा हुआ है और ये आसपास लोग है।

बड़े बड़े पूराने मकान ईंट से बना हुआ--